माइंड का भी एकदम शांत रहता है मन का तनाव खींचाव वगेरा । इसलिए जिम जाना चाहिए। सुबह उठके जिम जाना चाहिए। बॉडी बनानी चाहिए। बॉडी बनाने से बोहोत फायदे हैं। बॉडी --

बुके बहोत अच्छा गिफ्ट है। किसी को कम पैसे में बुके देने के लिए बुके करते हैं। कार्ड्स वगेरा पार्टी सेलिब्रिटीज को देने के लिए। बर्थडे में भी लोग बुके लेकर जाते हैं और घर के डेकोरेशन के लिए भी बुके एक अच्छी चीज़ है। पैसे कम पैसो में फूलों के साथ हमेशा यादगार रहने वाली एक चीज़ है।